यहां पे आप देख सकते हो हैं।

पंखे लगे हुए हैं लाइट का भी प्रबंध है और यहां पे ये बैग है यहां पे एक बेड रखा हुआ है।

यहां पे आप देख सकते हो भारतीय पेट्रोल लिखा हुआ है।

और यहां पे पंखे भी लगे हुए हैं लाइट भी रखी हुई हैं।